यह मारवाड़ी कन्या पाठशाला है जो टोडरमन लेन भागलपुर में स्थित है इसकी स्थापना --

और मेन्टल पीस के लिए भी बहुत जरुरी है | यहाँ की सुव्यवस्था बहुत अच्छी है और ये बहुत ही स्वच्छ भी रहता है |

क़्वालिटी वाले होते हैं और इसे आप मिनी मॉल भी कह सकते हैं जो की मनाली में स्थित है |

जाती है और ऑटो भी जाती इ-रिक्शा भी जाती है और इसके नीचे आपका सब्जी मंडी है जहाँ सब्जी मिलती है दूसरे साइड --